मम्म दुकान ह अअ सा अ दुकान के आगे साइकिल बा बाइक बाटे खूब बढ़िया से रेलिंग बा।

और खूब बढ़िया बढिया बाटे ओमे नाव --

देले बाटे मंदिर पे तीन गो महंत बइठल बा लोग। खूब बढ़िया मंदिर बा। अह साइड में पेड़ पौधा बाटे।